यहा एक रेड दिखाई दे रहा है इसके निचे कुछ व्यक्ति बैठे हुए है एक व्यक्ति खड़ा होकर कोई चीज़ चला रहा है।

यह किसी प्रकार का जनतन है यहाँ पे बहु मंजिला इमारत दिख रही है इमारत के पीछे कुछ वृक्ष भी लगे हुए है यहां पर बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे है।

हरे पीले लाल बैलून ब्लैक बैलून से सजाया--

फोर लेन हाईवे रोड दिख रहा है जो की काफी ज्यादा चलता हुआ दिख रहा है सामने कुछ इमारतें दिख रही है।

यहा पे एक थेरेपी टाइप की दी जा रही है एक व्यक्ति लेटा हुआ है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।